मैदान दिखाई दे रहा है जिसका कलर जिसमे बिल्डिंगें दिखाई दे रही है इसमें सीढ़ी दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं इसमें वाईट कलर की कारे दिखाई दे रही है इसमें हरी हरी घास दिखाई दे रही है।

इसमें रेड बाउंड्री दिखाई जिसमे एक लड़का मोबाइल खेलता हुआ दिखाई दे रहा ब्लैक कलर के जूते दिखाई दे रहे--